और यहां पे इतनी सुंदर ग्रीनरी है बच्चों के खेलने के लिए इतनी अच्छी जगह है जो कि बहुत अच्छी लगती है सबको आ यहां पर आकर बहुत अच्छा --

और यहां पे बअअ हेयर कटिंग बियर्ड एंड ऑल टाइप्स ऑफ मेनस --

देख पा रही हूं कि यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर मैग्गी और बच्चों का सामान रोजमर्रा की जिंदगी की सारी चीजें अवेलेबल हैं।

देख पा रही हूं कि यहां पे यह चित्र भारतीय डाक पोस्ट इंडिया पोस्ट का है।

क्योंकि लोग आकर यहां पर बैठ सकते हैं आराम से और थोड़ा म --

लोग यहां पर आते हैं यहां पर सामने गार्डनिंग भी की हुई है बहुत सुंदर भी दिख रहा है।

उनके टेबल पर चार्ट पेपर्स और ग्लू वगैरह सीजर वगैरह सब पड़ा हुआ है जो कि वो एक कुछ अच्छा अच्छी चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

चित्र में देख पा रही हूं कि ये एक गणपति पप्पा की मूर्ति है।

जगहों पर जाते हैं जर्नी के लिए ट्रेन आने ही वाली होती है और लोग इंतजार --